पीछे में और एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

सर के सामने में रेड कलर का कुर्सी भी रखा हुआ है।

पीछे में झोपड़ी का घर भी दिखाई दे रहा है।

ओ इंसान का ड्रेसिंग टी शर्ट लांग पैंट और वाइट शू पहना हुआ।

माही और चश्मा भी पहन के दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में कार वॉश स्टेशन दिखाई दे रहा है स्टेशन में दो गाड़ी में दिखाई दे रहा है।

एक ब्लू कलर का कार को धुलाकर रखा हुआ है और एक वाइट कलर का कार को धुलने के लिए रुका हुआ है।

इस पिक्चर में क्लास रूम दिखाई दे रहा है क्लासरूम के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट लोग--

इस पिक्चर में पाव भाजी तीन बना के दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में रेस्टोरेंट रूम का अंदर दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट के अंदर में टेबल और बैठने का बेंच लोग रखा हुआ है टेबल के ऊपर में टिशू पेपर और--

और दूसरे साइड के वाल में एक बैनर भी चपका के दिखाई दे रहा है।

वॉल में पोस्टर लोग भी लगाया हुआ है।

सामने में बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स लोग भी दिखाई दे रहा है कपड़ा भी सुखाके दिखाई मिल रहा है।

ये मेरा गाँव है और सामने में चावल का बस्ता भी दिखाई दे रहा है।

इनके अंदर में एक लड़की भी दिखाई दे रहा है और अंदर में स्टूल लोग भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में कोलगेट और शैंपू लोग भी दिखाई दे रहा है।

और दूसरे साइड में एक बंधन बैंक भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर में बस्ता और पानी का बॉटल भी दिखाई दे रहा--

बास्केट के सामने में एक रेड कलर बकेट भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में चर्च का अंदर दिखाई दे रहा है चर्च मे बहुत सारा बैलून और स्टार को लगा के रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर में एक इंसान काउंटर में बैठ के दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर में पंखा भी लगा के दिखाई दे रहा है और बाहर में--

सीलिंग में लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है और ऊपर में ए_सी भी लगाया हुआ है।

वॉल में फोटो फ्रेम लोग भी चपका के दिखाई दे रहा है।

भी लगाया हुआ है दीवार में स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और--

इस तस्वीर में बस स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में बेकरी शॉप दिखाई दे रहा है।

रखा हुआ है बेकरी शॉप के अंदर केक और बहुत सारा अलग खाने का चीज लोग दिखाई दे रहा है।

कृष्णा और राधा दोनों के हाथ में प्लेग भी दिखाई दे रहा हैं।

नीचे फ्लोर में रेड कारपेट बिछाया गया है ऊपर में स्टार लोग से सजा कर रखा गया है।

जोकि सामने में एक बड़ा फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है।

ऊपर में पंखा भी लगा के दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है सामने में पेड़ काट के रखा हुआ है।

दीवार में क्रॉस का साइन भी बनाया--

चर्च के अंदर में भी बहुत सारे इंसान लोग दिखाई दे रहा है।